बड़ा सा दिख रहा है पार्किंग का और बहुत सारे ऊपर लाइटें भी दिख रहे छोटे छोटे से और एक टी_वी भी दिख रही है लगी हुई।

ये सारिग गाड़ी के टायरान दिख रहे हैं कार के टायरान दिख रहे हैं छोटे से और बहुत सारे वही दिख रहे हैं।

पीछे गार के टेरन दिख रहे हैं ये सब बहुत सारे पूरे कलर --

बाहर से ऑफिस के बाहर एक्टिवा और एक दो एक्टिवा बच्चा खड़ा हुआ है और सिक्योरिटी भी दिख रही है बाजू में दिख रही है।

यह किसी के घर का छत गिरा रहे हैं दो आदमियां आकर हथोड़ी मार रहे हैं औ छत को बंबुओं प लगा लगाए गए हैं औ और आजू बाजू--

दूसरी गाड़ी में ब्लूटूथ भी दिख रहा है और पीछे झाड़ भी दिख रहा है और पीछे कुछ लोगा भी ठहरे हुए हैं और पीछे एक पत्थर भी दिख रहा है बड़ा सा।

एक छोटी सी दुकान लग रही है। जहां पर एक बच्चा चाय दे रहा है और पीछे फैन भी दिख रहा है और--

एक बस स्टैंड बस स्टॉप दिख रहा है जहां पर बहुत सारे लोगों आकर बैठे हुए हैं दो लेडिस दिख रहे हैं एक आदमी सामने से आ रहा है।

एक गोदाम दिख रहा है जो पार्टीशान्स सिटी लाइफ पार्टीशन से दिख रहा है और पीछे एक घारा भी दिख रहे है और झाड़ा भी दिख रहे है।

उपर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया पीछे स्टेज पे अच्छा सा डेकोरेशन किया गया है स्टेज पर तीन लोग बैठकर गाना गा रहे--

एक बड़ा सा फंक्शन हॉल लग रहा है जहाँ पर लोगां शादी रखते हैं और बहुत सारे सेलिब्रेशन करते हैं।

और यहां पर बहोत सारे कुर्सियां भी रखी हुई है बहोत सारे परदे के ऊपर परदे लगाए गए हैं और अच्छा खासा सजावट की गई है और पीछे दो आदमीया भी दिख रहे हैं।

यह कोई हेयर कटिंग की दुकान लग रहे हैं जहां पर लोगों हेयर कटिंग के लिए आते हैं बाला कटवाने के लिए आते हैं अच्छे आसी--

दो चालू है और प्लेट भी दिख रही है और पैटरूम भी दिख रहा है और बाल में भी देखे गए हैं और बहुत सारे कुर्सियां में दिख रहे हैं और पीछे डोर भी दिख रहा है जाने के लिए।